नमस्कार दोस्तों signal processing using scilab पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में scilab का उपयोग करते हुए मैं आपको दिखाऊँगी कि विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को कैसे बनाना है और सिग्नल्स का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न कार्यों को कैसे पूरा करना है
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं scilab 533 वर्जन के साथ ऊबंटु 1104 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास से पहले आपको scilab का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
scilab की बुनियादी बातें जानने के लिए कृपया scilab में स्पोकन ट्यूटोरियल के बुनियादी स्तर की श्रृंखला देखें
जो कि हमारी वेबसाइट wwwspokentutorialorg पर उपलब्ध है
इस ट्यूटोरियल में मैं लगभग 3 बुनियादी सिग्नल्स का वर्णन करूँगी plotting continuous और discrete sine wave plotting step function plotting ramp function
plotting continuous and discrete sine wave के साथ शुरू करते हैं
scilab कंसोल विंडो को खोलें
यहाँ टाइप करें: t equal to zero colon zero point one colon two multiplied by precentage pi semicolon
फिर x equal to sin of t semicolon then plot 2d into bracket t comma x और अपने कीबोर्ड से एंटर दबाएँ
यह continous sine wave है
discrete sine wave पर चर्चा करते हैं
कंसोल विंडो पर टाइप करें plot two d3 within bracket invertes comma gnn comma t comma x और एंटर दबाएँ
यह discrete sine wave है
अब plotting step function और plottingramp function के बारे में चर्चा करते हैं
मैंने पहले से ही signalssce नामक फाइल में step और ramp सिग्नल को बनाने के लिए कोड लिखा है
scilab एडिटर का उपयोग करके signalsce फाइल खोलें इस कोड को निष्पादित करें मैन्यू बार में execute बटन पर क्लिक करें
step और ramp सिग्नल इस प्लॉट में प्रदर्शित होता है
अब सीखते हैं कि सिग्नल का विश्लेषण करने के लिए अलगअलग आपरेशन कैसे करना है देखते हैं कि दो सिग्नल के बीच convolution कैसे करना है
scilab कंसोल विंडो खोलें और टाइप करें x equals to within square bracket one comma two comma three comma four
फिर टाइप करें h equals to within square bracket one comma one comma one
अब convol opening bracket x comma h closing bracket टाइप करके convolution लागू करें और अपने कीबोर्ड से ए्ंटर दबाएँ
एक आउटपुट यहाँ देखा जा सकता है
अब हम इनबिल्ट कमांड dft का उपयोग करके एक पृथक अनुक्रम के लिए discrete fourier transform के बारे में सीखते हैं
कंसोल विंडो पर टाइप करें x equals to within square bracket one comma two comma three comma four
फिर टाइप करें within square bracket xf equals to dft into bracket x comma minus 1 जहाँ x इनपुट वैक्टर है और dft के लिए फ्लैग वैल्यू 1 है
enter दबाएँ
आउटपुट इस तरह दिखता है
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनवर्स डिस्क्रीट fourier transform की गणना कैसे करनी है यह उसी इनबिल्ड कमांड dft का उपयोग करके किया जा सकता है
scilab कंसोल विंडो में टाइप करें squarebracket x equals to dft within bracket xf comma 1 यहाँ idft के लिए flag value 1 है
आउटपुट यह है
अब fft का उपयोग करके डिस्क्रीट fourier ट्रांसफोर्म की गणना करते हैं
कंसोल विंडो पर टाइप करें x= square 1234x equals to square bracket one comma two comma three comma four
एंटर दबाएँ और टाइप करें y = fftx1 y equals to fft within bracket x comma minus one
एंटर दबाएँ और आप आउटपुट देख सकते हैं 10 2 + 2i 2 2 2i
अब fft का उपयोग करके इनवर्स डिस्क्रीट fourier ट्रांसफोर्म की गणना करना सीखते हैं
scilab कंसोल विंडो पर टाइप करें y equals to within square bracket ten comma minus two plus two into percentage i comma minus two comma minus two minus two into percentage i
और एंटर दबाएँ और टाइप करें x ffty1 x equals to fft within bracket y comma 1 और एंटर दबाएँ
आउटपुट x =1 2 3 4 के रूप में प्रदर्शित होगा
अब दो वैक्टर के बीच के संबंध को ज्ञात करते हैं
scilab कंसोल विंडो पर ऐसा करने के लिए
टाइप करें x one equals to within square bracket one comma two comma three comma fourऔर एंटर दबाएँ
टाइप करें x2 equals to within square braccket one comma three comma one comma five और एंटर दबाएँ
टाइप करें r x x two equals to corr within bracket x comma x two comma four और एंटर दबाएँ
आउटपुट इस रूप में प्रदर्शित होगा
अब सीखते हैं कि दिए गए सिग्नल का सैम्पल कैसे करना है
मैं samplingsce खोलती हूँ जहाँ मैंने पहले से ही samplingsce में कोड लिखा है यहाँ execute बटन पर क्लिक करें
एक प्लॉट प्रदर्शित होता है
संक्षिप में
इस ट्यूटोरियल में हमने sine step और ramp signal को प्लॉट करना
convol द्वारा linear convolutio प्रदर्शन करना dft द्वारा dft और idft प्रदर्शन करना
fft द्वारा fft प्रदर्शन करना सैम्पलिंग के लिए corr द्वारा संबंध पता करना सीखा
इस url पर उपलब्ध वीडियो देखे
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविथ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन भी करती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालो को प्रमाण पत्र भी देती है कृपया हमें contact@spokentutorialorg पर लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद